इसमें बांस भी लगी हुई है।

बाइक भी खड़ी हैं।

ये एक दुकान है जिसमें बहुत सारे कप दिखाई दे रहे हैं।